यहां पर बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं जो कि यहां पर लाइट भी जल रही है और पत्थर भी लगे हुए हैं।

ये तो बहोत ही अच्छा है जो कि देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है। ये इसका पानी तो बहोत ही अच्छा लग रहा --

ये तो बहोत अच्छी सिटी बनी है| यहाँ पर ये बहोत अच्छी दुकान लग रही है| दोस्तों में भी इस दुकान पर जरुर आऊंगा।